किसी बाहर के एरिया से ली गई है इस फोटो में हमें एक लड़का बैठा हुआ दिखाराई दे रहा है।

लेफ्ट की तरफ हमे एक पाइदान देख ने को मिल रहा है ये देख ने मे मेडिकल की फोटो है।

इसकी तरफ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है यह किस मस्जिद के अंदर की फोटो है सामने की तरफ वॉल है जो कि ग्रीन कलर की है।

फोटो किसी बाहर के एरिया से ली गई है ये फोटो कोई हॉस्पिटल के अंदर की फोटो है सामने की तरफ हमे एक टेबल दिखाई दे रही है जो की लोगों के लिए बैठने के है।